जो हिंदी में भी है मराठी में भी है अध्ययन केंद्र कोड नंबर भी स्टडी सेंटर कोड भी है यहां पे धूप निकल --

यहां पे है बहुत बड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

जो यहां पे वर्कर है और यहां पे है--

और यहां पे जो चीजें हैं खेलने के लिए जो लगते --

जो यहां पे लोगों को ले जाने के लिए साइकिल पे--

यहां पे ऊपर लिखा है पूर्व मध्य रेल लिखा है।

यहां पे बढ़े से बिल्डिंग्स हैं जो वाइट कलर के हैं।

और यहां पे टूव्हीलर थैरे फोरव्हीलर थैरे है वाइट कलर के।

दीवाल का कलर यहां पे कलर में दिया गया है जो वाइट और--

अ लड़कियां बैठे हैं औरतें बैठे हैं।

बहुत सारे हैं यहां पे और यहां पे है--

रात का टाइमिंग है साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है।

जो साड़ी पहन के और यहां पे पर्दे हैं जो डेकोरेट किया--

बहुत सारे यहां पे कंपनी वाइज वाले पॉर्स वगैरह है और यहां पे है--

और यहां पे साइड में भी दुकानें हैं और धूप भी नजर आ रही है आसमान नीला नजर आ रहा है बहुत सारे पेड़ है यहां पे --